--गिरता हुआ दिखाई दे रहा है सफेद कलर का नीचे थोड़े पैड-पौधे लगे हुए है उनकी पत्तिया हरी-हरी है दिखाई दे रही है।

मेरे को एक पहाड़िया दिखाई दे रही हैं ऊपर--